अगल-बगल कुछ घासे दिखाई दे रहीं हैं ऊपर एक पहाड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसपे बहुत सारी घासें वगैरा लगाई गई हैं सामने ही एक पानी दिखाई दे रहा है।